जो की उसे ब्लैक कलर की पन्नी चढ़ी हुई है।

जो की सीधे ऊपर जायेगा। पानी में नीचे की और गिरते पानी में बह कर चमक रहा है।